जहां पे वाइट कलर का मार्बल लगा हु--

बहोत सुंदर जगह की तस्वीर दिखाई दे--

और बैठने का बंदोबस्त चटाइयो के ऊपर किया गया है जो की भूरे रंग की है।

भी बहोत सारे साथ में हम--

की ग्राउंड पे एक मूर्ति बनी हु--